मैदान है हरी घास है। खेल रहे हैं मकान है खम्बा है लाइट है पेड़ हैं।

ये कोई स्टेशन है। रेल पटरी है कुछ साइड से--

ये बारात घर है। कुछ कुर्सी हैं हरी हैं लाल हैं नीली हैं कुछ हैं। कुछ लोग भी हैं कुछ माला भी टंगी कुछ चांदनी भी लगी हैं।

कुछ छोटे-छोटे पौधा भी हैं। कुछ बाहर का भी दिख रहा है। कुछ ऊपर भी बना है सफेद --

कुछ लोग भी दो खड़े। कुछ पास में बिल्डिंगें भी हैं। कुछ सफेद पुताई से भी पुती --

कुछ मोटरसाइकिल भी है। कुछ पास में बड़े पेड़ हैं। कुछ ऊपर बहुत बड़ी खिड़की है।

ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। कुछ इसमे गाड़ी भी भी हैं। कुछ बहुत सब खुली भी हैं। कुछ सामान भी दिखता भी है। कुछ भी हैं।

ये बहोत बड़ा पूल है पूल के नीचे भी पूल है। बहोत दूर तखत भी पड़े हैं सारे। एक साइकिल भी है। एक चाय की दुकान भी है।